और यहाँ पे सफेद कलर का बेड --

यहां पे बहुत सारी चीजें रखी हुई है यहां पे चिकन स्नैक्स बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहां पे डस्टबिन भी र --

वो दीवार पर ग्रीन और व्हाइट कलर से पेंट किया--

यह एक पहाड़ की तस्वीर है पहाड़ पर एक आदमी और लेडीज खड़ी हुई है यहां से पानी बेह रहा है।

पीछे एक ए_सी लगा हुआ है एक बल्ब लगा हुआ है।

बाइक खड़ी हुई है और बाहर बहुत सारी--

यह एक दुकान है इसके ऊपर जिस पर लिखा है चिल्ड्रेन बु--

अ यहां पे बहोत सारी कुर्सियां भी लगी हुई है।

लगा हुआ है जो कि कांच का है।

यह एक डांस एकेडमी यहां पे चार लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही हैं।

यहां पे दीवाल पे बलून लगे हुए हैं अंदर--

यह एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है यहां पे मेज और कुर्सी रखी मेज पर बहुत सारी प्लेट रखे हुए प्लेट पर पुलाव रखा हुआ है।

यहां पे पेप्सी रखी हुई है। यहां पे टिशु भी रखे हुए हैं। यहां पे एक आदमी बैठकर खाना --

टी_आई का अस्पताल की तस्वीर है जिसका नाम जैत सिंह बवासीर अस्पताल हैं।